एक ईटा दिखाया जा रहा है। एक रास्ता दिखाया जा रहा है। लाल रंग का बरामदा बी दिया हुआ है वो भी दिखाया जा रहा है आकाश दिखाया जा रहा है बहुत सारा तार दिखा --

एक बड़ा सा रूम दिखाया जा रहा है रूम में वॉशिंग मशीन दिखाया जा रहा है वो ही बगल में इसका डब्बा में छोटा-छोटा क्या रखा दिखाया जा रहा है बलून लगा हुआ है लाइट दिखाया जा रहा है।

बस बुला के कलर हैं पीले अकाश दिखाये जा रहे हैं| तीन ठो बस हैं| एक सीरी दिखाये जा रहे बस के ।